ये दरवाजे पर लगता है खड़े हैं और इसका फोटो लिया गया है।

ते भी हैं धुप का मौसम है इसमें हमें लगता --

पानीयों को गिराया जाता है। होके डिब्बा सहित।